इस फोटो में दुकान पर बड़े डिब्बे दिखाई दे रहे हैं और चेयर दिखाई दे रही है और खिड़की दिखाई दे रही है।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

भी लगी है जिसके पास में एक--

रूट दिखाई दे रहे है पर बहोत सारी रोशनी दिखाई दे रही है।

ये पाइपलाइन दिखाई दे रही है और ग्रिल दिखाई दे रही है--

एक लड़का अंदर दिखाई दे रहा है झुक के पैसे निकाल रहा है।

अ आसपास में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।